आसमान बिल्कुल साफ है और यहां पर बहोत ही खूबसूरत सा चर्च का नजारा हमें दिखाई दे रा है जो थ्री मंजिला चर्च यहां पर--

अअ रेडिश कलर और ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं बहोत बड़ा समंदर है इसमें कुछ पत्थर है।

एक रोड भी है यहाँ पर बाहर एक सुंदर सी ग्रिल लगी हुई है।

आसमान बिल्कुल साफ है और क्लीन है धूप बहुत अच्छी लगी हुई है।